बड़ी सी एल_ई_डी टीवी भी दिखाई दे रही है। हम ऊपर की ओर देख सकते हैं कुछ लाइटे भी जल रही हैं और नीचे फर्श बोहोत ही साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा --

घरों में कुछ खम्भे बिजली के और बिजली के तारे भी दिखाई दे रही हैं साथ ही आगे कि ओर हम देख सकते हैं जमीन है। जमीन पर कुछ घास भी उगी हुई हैं |

इस चित्र में हम देख सकते हैं हमे एक डिब्बा दिखाई दे रहा है और उस पर एक टेबल दिखाई दे रही है। टेबल के ऊपर हमें बहोत सारे ब्रेड खाने को रखा हुआ है साथ ही उस टेब मेज के सामने हमें एक बैनर भी पोस्टर भी चिपका हुआ दिखाई दे रहा है जो नीले और लाल रंग से --